यह एक तालाब है और इस तालाब में बहुत पानी है इस तालाब के पानी से लोग नहाते हैं ।

यह एक पार्क है और इस पार्क में बहुत सारे लोग आते है रहने घुमने और यहाँ पे घुमने में बहुत ही अच्छा लगता है इस पार्क में बहुत सारे झूले है जिसमे की बच्चे झूलते है और बहुत साडी कुर्सियाँ है जिसमे की लोग आके बैठते है टहलते है ।

यह एक पहाड़ है। और यह पहाड़ बोहोत ही बड़ा है। इस पहाड़ में बोहोत सारे लोग आते है घुमने। और यहां पे घुमने में बोहोत ही अच्छा लगता है। यहां पे बोहोत सारे पेड़ है जो की पहाड़ की सुंदरता को बढ़ा देते है।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते भी हैं घुमने के लिए और यहाँ पे घुमने में भी बहुत अच्छा लगता है।